यह एक चित्र है चित्र के अंदर बहुत से लोग बैठे हुए हैं।

ये एक चित्र है चित्र के अंदर बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है और कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं।

आस पास बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक चित्र है चित्र के अंदर एक आदमी नज़र आ रहा है और बहोत सी बुके भी नज़र आ रही है।

और कुछ लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं।

और दो लोग भी खड़े हुए हैं जो कि अपनी सेल्फी खिचवा रहे हैं।

दुकानें नजर आ रही हैं और एक दुकान लहंगों की दुकान है उसमें बहुत से लहंगे--

यहएक चित्र है चित्र के अंदर एक बुक स्टोर बना हुआ है और उसके आसपास कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं।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

यह एक चित्र है चित्र के अंदर बड़ा सा घर नजर आ रहा--

यह एक चित्र है चित्र के अंदर ज्वेलर्स बना हुआ है।

यहएक चित्र है चित्र के अंदर बहुत बड़ी मस्जिद बनी है जो कि ग्रीन और वाइट कलर से पोती गई है और कुछ पेड़ पौधे भी लगे।

और आस पास कुछ कारें भी खड़ी हुई--

और उसके अंदर बहुत लाइटें भी लगी हुई हैं।

और एक जे_सी_बी भी जाती हुई नज़र आ रही है और एक रेड कलर की कुर्सी भी रखी हुई है।